नीचे माटी है कोई एक बर्तन है।

ये एक बियर बार का होटल दिखाई दे रहा है इधर चार पांच जेंट्स बेटे हैं.

एक होटल दिखाई दे रहा है.

ओ और एक गुलाब का भी फूल है इधर.

बहुत सारे खुर्चिया टेबल और अलमारी दिख रही है.

रिफ्रेश है रेफ़्रिजशन है एक फ्रिज ये सेल करनेका दुकान है.

कुछ तो ए_सी भी है बाहर एक और दुकान सा है खाली --

यह बहुत सारी मशीन दिखाई दे रही है बाजू में घर है और बहुत सारे पेड़ है.

कुछ छोटे पौधे भी है घास है.

ये बहुत सारे बस है रोड है बस ट्रैवल्स दिखाई दे रहा है दो-चार आदमी भी है।

एक मंदिर है माता रानी का बाजू भी मंदिर एक दिखाई दे रहा है.

कोई सब्जी ले रहा है कोई कुछ कर रहा है.

बाहर दो चार गाड़ियां दिखाई दे रही है ये--

एक विज्ञान बुक सेंटर स्टेशनरी के होलसेल बुक मिलते हैं.

एक बंगला दिखाई दे रहा है खाली दो चार लोग काम कर रहे हैं कंपनी है.

एक उच्च विद्यालय दिखाई दे रहा है.